दो महिला जो टीचर है खड़ी हुई है गलियारे में चेयर कुर्सी लगी हुई हैं एक बच्ची जो व्हाइट कलर का टी शर्ट पहनी है वो --

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिस पर एक मतलब बोर्ड लिखा गया है द गया मुस्लिम।

ये स्टेशन दिखाई दे रहा है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है लिखा हुआ छपरा कचहरी।

जिसमें पानी दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है झंडे दिखाई दे रहे हैं।

हां रेलवे लाइन दिखाई दे रहा है जो पटरी दिखाए गए दो तीन पटरी और लाइन के बगल में--

यह एक होटल है होटल में बहुत सारे डब्बू माने बर्तन रखे हुए हैं और इसमें व्यक्ति खड़े हुए है और एक व्यक्ति अप--